ये एक राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय जयपुर में बरकत नगर के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बाहर की ओर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर डॉक्टर का नाम एड्रेस --

निशुल्क सेवा उपलब्ध है ये भी बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक गांव की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये एक महाविद्यालय की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

किसी मकान के बाहर की जमीन दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी बेल लगी हुई दिखाई दे रही है।

जो भी आदा ही नजर आ रहा है।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके सामने की और बहुत सारी अलग अलग कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर लाइटों के कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

और दरवाजे के पास में बहुत सारे आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।